यह एक समुदायी शौंचालय दिखाई दे रहा है जिसमें स्वच्छ नारी --

यहाँ पर कई व्यक्ति खड़े होकर पुजा प्रारम-पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक हॉस्पिटल लग रहा है जिसका नाम एम.एम. हॉस्पिटल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।